आठ लोग खड़े हुए हैं एक व्यक्ति बैठा हुआ है।

बड़ी बड़ी चट्टानें दिख रही हैं और पत्थर दिख रहे हैं।

यह एक बड़ा मैदानी क्षेत्र है यहां बहोत सारा पानी दिख रहा है।

यह एक बस स्टैंड है यहां बहुत सारी बसें खड़ी हुई हैं।

एक घर दिख रहा है एक बड़ा पोस्टर लगा हुआ है।

पानी बह रहा है बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हैं।

यहां एक बड़ा पोस्टर लगा हुआ है जिस पर वाटर एवं चिल्ड्रन पार्क लिख हुआ है।

बड़े पेड़ पौधे लगे हैं घास लगी हुई है।

बोहोत सारी छोटी छोटी हिरनें और बड़ी बड़ी हिरनें दिख रही --

यह एक दुकान है यहां बहुत सारी मशीनें अलग अलग प्रकार की रखी हुई है।

एक डब्बा टंगा हुआ है एक घड़ी टंगी हुई है।

पेट्रोल पंप पर इंडियन ऑयल लिखा हुआ है।